अ सेंट लगा है दुकान दुकान है किराने का दुकान है उधर बहुत सा समान रखा हुआ है बहुत सा समान जिसे हम बोल नहीं सकते जैसे थैला हो गया सर्फ साबुन सब हो गया है सब अच्छा-अच्छा चीज है खाने --

यहाँ पर सैलून सैल यहॉं सोए सैलून है और सीसा है और दो गो सोफ़ा है उस पर बैठ रहा है एक आदमी सीसा में फ़ोटो घिच रहा है देना जना।

यहाँ पर अ स्कूटी का अ स्कूटी का ये ए कारखाना है। जिसमें लिखा हुआ है के.ओ.एम.ए.के.आई. केमेक केमेक मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल स्कूटी बोहोत सारे है।

यहाँ पर अ पैशन प्रो है मोटरसाइकिल है और बहुत सारा है।

मंदिर है मंदिर में एक आदमी पूजा करने के लिए अंदर गए हैं यहाँ पर लगता है काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं और यहाँ पर टि पूल है पॉल है यहाँ पर टि बहुत अच्छा घर।